अम्म दाल हैं चावल हैं खाने पीने वाला सामान हैं बच्चों को खिलौना हैं सब कुछ मिलता हैं ए ब्लीडिंग का बिलिंग करवाना बहुत अच्छा हैं सुविधा हैं।

एक गर्ल्स हॉस्टल है ब्लू कलर से पेंट किया हुआ हैं वाइट कलर से भी पेंट किया हुआ हैं अच्छा जगह पर है सुंदर लग रहा है इसमें लड़कियाँ रहती होंगी --

जो सबह सुबह में नाश्ता लेते हैं चाय पीते हैं और लोग इधर-उधर जिसको जहाँ जाना हैं ट्रेन के लिए बहुत अच्छा सुविधा हैं।

ए स्टाइलिश हैं इसेेल सैलून है अच्छा-अच्छा बाल कटवाने जाता हैं लोग--

खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं दूर-दूर से लोग मूर्ति देखने आते हैं।